यहाँ दो-तीन हम्म हम्म नॉट श्याम बल्ट स्टील की बनी हुई बर्तनें रखी हुई हैं।

यहाँ एक आदमी का पैर दिख रहा है उसके पैर पे बैंडेज लगे हुए हैं।

यहाँ एक बड़ा सा मंदिर है शेर नवरतन पंचमुखी हनुमान मंदिर।